और यहां पे बहुत सामान दिखाई पड़ रहा हैं और उसके बगल में एक लोहे का खंबा गढ़ा हुआ है और शेटर भी लगा हुआ हैं।

और यहां पे बहोत सारे खिड़कियां दिखाई दे रहे हैं।

देखिए यहां पे एक बड़ा दुकान है।

बहुत अच्छी से सजाए गए हैं।

यहां पे व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है और यहां पे दो पहिया वाहन दिखाई पड़ रहा है और बहुत सारा पेड़-पौधा दिखाई पड़ रहा है।

और यहां पे खूबसूरत नजारा आ रहा--

बहुत अच्छे लग रहे हैं और सामने में बहुत बड़ा फील्ड है।

दिखने में काफी सब अच्छे लग रहे हैं।

यहां पे बुड्ढा दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ पे बहुत सारे कपड़ा भी लटका हुआ है।

नीचे ग्रीन कलर का पर्दा मारा हुआ है।

यहां पे बहोत सारा पेड़ पौधा नजर आ रहा है जो की काफी बड़ा बड़ा दिख रहा है।

यहां पे बहुत बड़ा मंदिर है और यहां पे काफी ज्यादा खूबसूरत है।